यहां एक एंबुलेंस जो है खड़ी हुई है और पहाड़ी एरिया लग रहा है छोटी छोटी सो है यहां पर लाइटे नजर आ रही है।

यह बस स्टैंड का दृश्य है जहां पर बसें खड़ी हुई हमें यहां पर नजर आ रही हैं और पब्लिक चेयर यहां रखी हुई हैं यहां पर पब्लिक बैठी हुई है।

छोटे छोटे से पेड़ पौधे भीं यहाँ नज़र आ रहे--

सीढ़ियां नजर आ रही है और बहोत सारी गाड़ियां और बहोत सारे पेड़ पौधे जो है--

दिख रही है और ये ऐसा लग रहा है जैसे बहोत ही कोई बड़ा कॉलेज हो जो हमें यहां पर नजर आ रहा है और रेड कलर की यहां की छत जो हमें दिख रही है।

ये एक जो हमें शॉप नजर आ रही है और बहुत ही सुंदर सी ये--

अह स अह स्वच्छ संरक्षण का बोर्ड लगा है दो हजार बाइस का मैं घर पर गीले व सूखे कूड़े को अलग अलग करके रखती हूं।

बहुत ही सुंदर जो है यहां का दृश्य दिख रहा है और सामने एक झूला लगा हुआ है। जहां पर लोग खड़े हुए हैं जो हमें इस पिक्चर मे दिख रहे हैं।

और ये बहुत ही सुंदर दृश्य हमें हम्म लग रहा है जिसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी फंक्शन का दृश्य--

इधर उधर मतलब जा रहे हैं कोई ऑटो में जा रहा है कोई रिक्शा में जा रहा है जो हमें यहां पर--

इस दृश्य में हमें यही दिख रहा है।